नीचे कुछ बाइक भी खड़े हैं।

यहां पे कई सारे बिस्किट्स रखे हुए हैं।

ये सारे सामान स्लैब के ऊपर रखे हुए हैं।

यह एक सनसेट का फोटो है।

यहां पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक क्लास रूम की फोटो हैं क्लास रूम में कई सारे बेंच रखे हुए हैं।

क्लास रूम का रंग गुलाबी है।

ये एक बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन का फोटो है।

सीलिंग पर कई सारे लाइट और पंखे लगे हुए हैं।

यह एक स्कूल का फोटो है।

नीचे जमीन पे कारपेट बिछाया हुआ है।

ऊपर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

डैम का पानी काफी गंदा है।

डैम के सारे गेट खुले हुए हैं और सारे गेटों में से पानी आ रहा है।

यहां पे बड़ा सा गेट बनाया हुआ है जिसके दोनों तरफ पोस्टर लगा हुआ है।

इसमें कई सारे फूल भी लगे हुए हैं बाहर दो गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

इस लाइन होटल के बाहर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो खड़ी है।

घासों का रंग हरा है आसमान में एक सुरज ढल रहा है।

यहां पे कई सारे लोग चल रहे हैं।

एक आदमी लाल कलर का शर्ट पहने खड़ा है।

इस ऑटो में तीन चक्के लगे हुए है।

यह एक कपड़े दुकान की फोटो हैं।

गेट के दोनों ओर टाइगर का मुंह बनाया हुआ है।

यहां पे एक टेबल पर रखा हुआ है टेबल के ऊपर कई सारे अवार्ड भी रखे हुए हैं।

यह रिलायंस फ्रेश का ग्रोसरी एरिया है।

यह एक ग्राउंड के फोटो है।

यहां पे दो व्यक्ति बैठकर खाना खा रहे है।

एक बच्चा पीछे खड़ा है पीछे कई सारे पानी के बोतल रखे हुए है।

इस रेलवे स्टेशन में बैठने के लिए काफी जगह बनाया हुआ है।

यहां पे कई सारे लंबे लंबे पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक ट्रक टोल को पास कर रहा है ट्रक का रंग सफेद है।

विद्यालय के बीचे बीच उसका नाम लिखा हुआ है।

यहां पे दो ऑटो लगा हुआ है ऑटो के साथ में एक कमांडर भी लगा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट की फोटो है।

सिलिंग पे सफेद और लाल रंग लाल रंग और ब्लू रंग की लाइट जल रही है।

इस रूम में एक बेड भी दिया गया है।

हवाई अड्डा के बाहर बहुत अच्छा गार्डेन बनाया हुआ है।

यहां पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है।